पेट्रोल टंकी ब्लू और व्हाइट कलर की दिख रही है।

इस पिक्चर में एक मैदान दिखाई दे रहा है।

उपर की ओर एक ब्राउन कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

पीछे की ओर येलो कलर का एक ढाबा बना हुआ है।

आगे की ओर बहोत सी लड़कियां बैठी हुई हैं जिन्होंने अपने पैरों का अंगूठा अपने हाथों से पकड़ रखा है।

ऊपर की ओर एक ऑरेंज बोर्ड लगा है उस पर भी श्री राजेश्वरी बुक लिखा है।

और मैदान में बहुत सी एक्सरसाइज की मशीनें लगी हुई है जिसमें कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो कि बहोत सी लाइटों से सजी हुई है मस्जिद बहोत बड़ी सी बनी हुई है।

दवाइयां सिरप और डब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

काउंटर पड़े हुए हैं जिन पर खाने का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक रोड बनी हुई है और साइड साइड में कुछ छोटे छोटे पौधे और छोटी छोटी सी घास लगी हुई दिख रही है।

एक बस व्हाइट कलर की है दूसरी पिंक कलर की तीसरी रेड --

इस पिक्चर में एक मछली मंडी दिखाई दे रही है।

बहोत बड़ी सी मछली ऊपर की ओर पत्थर पर रखे हुए दिखाई दे रही है।

पीछे की ओर कुछ एक्सरसाइज की मशीनें लगी हुई हैं और बहोत से पेड़ लगे हैं।

बहोत से बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं रोड का किनारे का बॉर्डर येलो और ब्लैक कलर का है।

ठेलों पर कुछ कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर एक स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है पीछे की ओर एक--

वह जमीन पर खड़ा हुआ है जिस पर बहुत सी मिट्टी और कंकड़ भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में एक पियानो दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत से बटन लगे हुए दिख रहे हैं।

जिस पर केक पेस्ट आइस-क्रीम पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच लिखा है।

इस पिक्चर में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

जिसमे कुछ टेबल्स और कुर्सियां पड़ी हुई है।

जिसके बाहर बहुत से बैटरी वाले रिक्शे खड़े हुए हैं।

पीछे की ओर रेड कलर से इंग्लिश में माँ चंचला लिखा हुआ दिख रहा है।